ये पिक्चर एक क्लिनिक है जहाँ पर एक डॉक्टर बैठे हुए नज़र आ रहे--

यहां पर ये फ्लोवर्स बोरियों में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं व्हाइट यहां पर एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का । यहां पर एक ग्रीन कलर की कैरट भी रखी हुई दिखाई दे रही है और एक ये---

जो कि हाथ जोड़े हुए खड़ी है नीचे एक लाईट जलती हुई नज़र आ रही है पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ डेकोरेशन भी दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर दो व्यक्ति ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर साइड में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में एक व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके हाथों में रींगे दिखाई दे रहीं ----